यहाँ पर मुझे एक इस्टेशन दिखाई दे रहा है एक मालगाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो है आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे है।